बाहर एक बुलेट रखी हुई है एक स्कूटी रखी हुई है और एक बाइक रखी हुई है।

दिवार पे एक गोल्डन कलर का पर्दा लगा हुआ है नीचे का फर्श सफेद कलर का है।

पेट्रोल पंप की मशीन है।

जिसमें ऑटो जोन लिखा हुआ है हिंदी में और अंग्रेजी में।

सामने दिवार पे एक एल.इ.डी. लगी हुई है।

आने-जाने का रास्ता है रास्ते के किनारे में पीले और काले कलर की बाउंड्री बनी है छोटे-सी।

यहाँ पे लोहे की बेंच मे बहुत सारे लड़के स्कूल की ड्रेस में बैठे हुए हैं |

ऊपर छत्त में नीली कलर की पट्टी है।

ऑरेंज और पीले कलर के गुब्बारे लगे हैं और नीले और सफ़ेद कलर के गुब्बारे लगे हैं ।

सफ़ेद कलर की साड़ी पहेन के खड़ी हैं उनके हाथ में कैंडल है।

सिरमेंटेड और तार से बाउंड्री बनाई गई है।

और स्टेचू बने हुए हैं जिसको एक में कोट पेंट पहना गया है और एक में जैकेट पहनाया गया है।